ट्रुथ प्लांट्स वेजिटेबल प्लांट्स एंड फ्लावर्स लगे हुए हैं।

क्योंकि इन स कालोनी को एक बिल्डर द्वारा बनाया गया है।

अंदर एक ट्रक काफी सारी थैलियों को खाली करके जा रहा है।

वहांन जैसे कार ऑटो रिक्शा टू व्हीलर्स स्कूटर --

साथ ही दुकान के बाहर पर मालाओं से काफी सुंदर डिजाइन्स भी बनाई गई हैं।

यहां पर आपको हर एक समान उचित दाम पर मिल जायेगा।

यह तस्वीर जमीन पे फ्लोरिंग करने वाले मटेरियल की है यह सारे मटेरियल अलग अलग शेप तथा अलग अलग रंग के हैं।

यह तस्वीर एक मॉल की है माल का नाम है बिग बाजार जो की बरही रोड में है मॉल में काफी सारे ब्रांड्स के स्टोर्स हैं।

मॉल काफी बड़ा है इसमें आपकी जरूरत का हर एक सामान मिल जाता है मॉल में काफी सारे ब्रांड्स पर काफी वक्त सेल भी चलती है।

ये तस्वीर एक नदी की है नदी पर काफी लोग स्नान करने के बाद उस पर पूजा कर रहे हैं।

ये तस्वीर दुर्गा माता की है दुर्गा माता को नवरात्रि के लिए प्रस्थान करने के लिए लेकर आया जा रहा--

यह तस्वीर एक छोटे से टपरे की है टपरे में आपको गुटका बीड़ी--

शारदा हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको ऊपर सीडीओ से चढ़कर जाना पड़ेगा शारदा हॉस्पिटल के नीचे अभी मेडिकल एंड जनरल स्टोर है।

तस्वीर एक साड़ी के दुकान की है इस दुकान में साड़ी के साथ साथ सूट और काफी सारे--

यह तस्वीर एक चर्च की है। चर्च को काफी सुंदरता से सजाया गया है।